यह इमेज देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये--

मंदिर ऐसा लगा रहा है जैसे की बहोत सालों से बना हुआ है।

और यहां पर ऐसा लग रहा है कि किसी--